मकान दिखाई दे रहा है इस की दीवाल का कलर वाईट है यहाँ पे कुछ शटर है भी दिखाई दे रहे है कुछ--

कुछ लोग खड़े हुऐ भी दिखाई दे रहे है यहां पे कार भी दिखाई दे रही है और बाइक भी दिखाई दे रही है यहाँ पे कुछ पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है और ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है और रोड भी दिखाई दे रहा है नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है।

एक दुकान दिखाई दे रही है जिसकी दिवार का कलर ब्लू है। यहाँ पे कुछ पोस्टर भी दिखाई दे रहै है और कुछ--